पीछे की तरफ एक बैंक प्रेस की मशीन रखी है और एक वोट रखी है और नीचे कुछ डंबल पड़े हुएं--

एक साइकिल खड़ी हुई है और कुछ पेड़ पौधे खड़े हुए हैं सामने की तरफ खेत हैं जिनमें कुछ सामान खड़ा हुआ है ईख खड़ी है।

और साइड में एक और मंदिर सा बना हुआ है और पीछे की तरफ एक बाइक खड़ी है और एक खाट खड़ी है और एक मेट्रो मिनी खड़ी हुई है।

पीछे की तरफ एक जाली लगी हुई है और कुछ बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और इसका हाथ में फोन है। इसकी साइड में एक लड़का और बैठा है जो कि स्टूल पर बैठा हुआ है। उसने हाथ में फोन ले रखा --

पीछे की तरफ घड़ा रखा है पानी का उसके ऊपर एक गिलास रखा हुआ है पीछे की तरफ कुछ तौलियाँ टंगी हुई हैं।

और नीचे की तरफ कुछ पोस्टर लगे हुए हैं और एक बॉक्स रखा है जिसके अंदर छोटे छोटे से कप रखे हुए हैं और एक फोन रखा हुआ है।

अमने की तरफ एक बिल्डिंग बनी हुई है उसमें ऊपर टील की छत बनी हुई है।

साइड में कुछ पेड़ खड़े हैं पीछे की तरफ को छोटे छोटे मकान के कोटेशन बने हुए हैं और कुछ पेड़ खड़े हैं कुछ घास खड़ी हुई है।

इस फोटो के अंदर एक बड़ा सा हॉल दिखाया गया है जिसमें बहुत सारी टेबल पड़ी हैं जो सफेद कलर की हैं और इनके साइडों में कुर्सियां पड़ी हुई हैं जो लाल कलर की हैं।

बोर्ड शिखा फैंसी ड्रेस इंपोरियम लिखा हुआ हैं।

सामने की तरफ एक बड़ी सी बेंच पड़ी हुई है जिस पर एक गद्दा रखा हुआ है और गेट पर शीशा लगा हुआ है और माला दिखाई दे रही हैं।

सामने की तरफ एक लड़के का स्टेचू बना हुआ है और इसने लाल कलर की टी शर्ट पहनी है।

इस फोटो में सामने की तरफ एक दुकान है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है इस बोर्ड प लिम्रा मोटर्स लिखा हुआ है।

पीछे की तरफ दीवार पर लाल कलर है और एक हैंगर लगा हुआ है।

इस नदी में कुछ व्यक्ति स्नान कर रहे हैं और हाथ जोड़कर आगे की तरफ खड़े हैं।

एक बाल्टी रखी हुई है जिसके अंदर कुछ मुरली रखी हुई हैं और साइड में कुछ शैंपू भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो के अंदर एक रोड दिखाई गई है जिसमें साइडों में सफेद कलर की पट्टी है।

ऊपर की तरफ कुछ मालाएँ लटकी हुई हैं और कुछ झालर लटकी हुई हैं।

पीछे एक बड़ी सी लाइट जल रही है जिसके नीचे कुछ काउंटर बने हुए हैं।

बैठको पर थाल बने हुए हैं और उनमें कुछ मिठाइयां रखी हुई है।

कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और तौलिया है और पीछे की तरफ कुछ ऑटो दिखाई दे रहे हैं।

उपर कुछ बिजली की वायर दिखाई दे रही हैं और कुछ लाइट दिखाई दे रही हैं।

और एक सामने बोर्ड है जिस पर सार्थक फाउंडेशन लिखा हुआ है पीछे की तरफ कु पेड़ खड़े हुए हैं।

नीचे कुछ मोजी पड़ी हुई है और साइडों में बहुत सारी पुराल लगी हुई है।

साइडों में कुछ साइकिलें खड़ी है और एक बीच में मोटरसाइकिल जा रही है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

पीछे कुछ खेत भी दिखाई दे रहे जिनमें फसल खड़ी है और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की तरफ एक बड़ा सा काउंटर रखा हुआ है जिसके ऊपर एक शीशा रखा हुआ है।

इस फोटो के अंदर सामने की तरफ एक बड़ा सा हॉल दिखाया गया है।

नीचे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपर आपका हार्दिक स्वागत है लिखा हुआ है।

में एक बांस का पेड़ खड़ा है और एक बिल्डिंग दिखाई गई है और इस बिल्डिंग पर लाल करके थंब बने हुए हैं।

ऊपर एक प्लेट है जी जिस पर डेप्ट ऑफ पोस्ट इंडिया लिखा हुआ है।

इस फोटो के अंदर एक ए_टी_एम और एक बड़ी सी बैंक दिखाई गई है।

साइड में कुछ तार दिखाई दे रही हैं और नीचे एक रस्सी जिस पर कपड़े सूख रहे हैं।

यहां पर कुछ औरतें भी दिखाई दे रही हैं सामने एक व्यक्ति वह गाड़ी के पास खड़ा है।

इसने हाथ मे एक लकड़ी कि टेकी ली हुई है और कुछ उसपे बैलून लगे हुएं हैं।

सामने एक व्यक्ति ने हाथ में मोबाइल ले रखा है जिसने सफेद शर्ट पहनी हुई है।

यहां पर कुछ बच्चे और कुछ औरतें व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और साइड में बड़े बड़े पेड़ हैं।